तकत भी है उसपे एक लड़का बैठा हुआ भी है।

साइड में कुछ विंडो भी है शीशे की।

बहोत सारे बलफ भी लग रहे हैं झालर भी लग रही है।

पीछे बहुत सारे लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं और सोफ़ा भी बीछ रहा है।

एक फैन भी रखा हुआ है।

बहोत सारे गमले भी यहां पर रखे हुए हैं।

और बहोत सारे पेड़ हैं बहोत सारी घास भी है।

यहां पर बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं और एक लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।